इस हॉल में छत पर बहुत सारे पंखे लगे हुए है इनका रंग काला है यहाँ पर ऊपर की ओर बहुत सारी ट्यूब लाइटें भी लगी हुई हैं।

ये एक कार्यालय है इस कार्यालय में दूध में मिलावट की जाँच की जाती है यहाँ पर दूध में मिलावट की जाँच करने की मशीन रखी हुई है।

इस मूर्ति के सामने की और चार लोग बैठे हुए है इन चारों ने पैन्ट शर्ट पहन रखा है ये चारों मूर्ति की आराधना कर रहे है।

यहां पर ट्यूबलाइट भी लगी हुई है यहां पर ऊपर की और दो छोटी-छोटी सी खिड़कियां भी नजर आ रही हैंयहां पर एक चार्ट पर कुछ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है।